ये एक स्टोर है जहाँं पे किताब मिलती है एक आदमी एक--

इस इमेज में एक बड़ी सी कमान है।

इसमें ऊपर बांध काम चालू है कई सारी साईकिल खड़ी है दो एक --

वहाँ पे एक भी लड़का नहीं है सामने बहुत सारे पेड़ है नारियल के --

एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और बिल्डिंग को गुलाबी कलर की है ।

फोर व्हीलर खड़ी हुई है कम से कम पांच छे --

पेड़ है एक बड़ा सा खांध उसपे कई चार प्रकार के तार है।

अऊ कई सारी सब्जिया हैं।

खड़े हुए और एक सामने फोर व्हीलर है।

ये कहीं की स्टोर है।